जो भैया अभी कपड़ों को दिखा रहे हैं लेडी के कपड़ों को।

गुब्बारा अंकल वो बैठे हुए है वो कस्टमर के के गेस्ट के दे रहे है देख रहे है पर्ची वगैरा।

दो भगवान की मूर्तियां हैंऔर यहां पर रस बहुत ज्यादा है।

ये शो के लिए का शोरूम लग रहा है।

इसमें एक ट्रक शॉकल का लगा हुआ है.

और बाकी तीन स्कूटी दो तीन स्कूटी लगी हुई हैं दो मोटरसाइकल लगे हुए हैं।

और उसमें जहा आटा जो है की पड़ी है सबने।

और साथ में इसके वेबल लाइन क्रॉसिंग लग रही है।

ये पौधे को पौधे वाले गमले बहुत अच्छे हैं मैं रंग बरंगे ग्रीन कलर के हैं।

कपड़े सुखाने के लिए हैंगर रखा हुआ है बहुत नाथा।

बहुत से पेड़ सूखे पड़े हैं और हल्दी के बूटे लगे हुए हैं साथ में।

ये एक हाईवे पे है जहां गाड़ियों के कवाड़ की गाड़ी खराब हुई है यहां पे गाड़ी को।

खोल कर रखा गया है रिपेयर करने के लिए वहां पर एक बाइक भी है बैक साइड पे एक कार लगी हुई है स्वीट लाइट लगी हुई है.

ये एक डाबा लग रहा है जिसमें।

को कस्टमर आए हुए हैं उनमें बाय एक बाइक है उसकी एक स्कूटरी लगी हुई है पीछे टेबल लगा हुआ है तो कुर्सी लगी हुई है।

यह एक जोड़ जैसा लग रहा है जिसमें अच्छे से।

ये एक लड़का है वह साइकल पे आया है।

और एक निशन लगे हुए हैं ब्लैक कलर की विंडो लगी हुई है।

ये कोई सिंगिंग की क्लास लग रही है जिसमें एक तबला बजा रहा है लड़का।

ये एक शूटिंग कंपटीशन हो रहा है।

और छत पे जो लाइट लगी हुई है ट्यूब वगैरह उसकी रोशन बहुत अच्छी।

कुछ लोग बैठे हुए हैं और टेबल लगे हुए हैं कुर्सी लगी हुई हैं।

गोल्डन और वाइट कलर के बैलून लगा हुआ है एसी लगा हुआ है।

और शॉप पे टीन लगी हुई है शटर लगा हुआ है।

ये यहां एक इसमें एक नदी दिखाई दे रही है बिल्कुल साफ नदी उसमें टू बोट ।

घुमा रही है और कुछ कुछ वहां लोग घूम रहे हैं।

तीन लड़के हैंऔर ऊपर शड़ पड़ी हुई है दो बंदे काम कर रहे हैं नीचे।

और इसमें गाड़ी को खोल का काम हो रहा है इसका।

यह कोई संगीत प्रोग्राम हो रहा है इसमें गिटार बजा जला रहे हैं एक लड़की एक औरत है.

और साथ में लाइटिंग लाइटनिंग की हुई है।

बैठने के लिए टेबल लगे हुए हैं कुर्सी लगी हुई हैं और।

ब्लैक ब्राउन कलर का पेंटिंग कर रखी है ऊपर से सीलिंग लगी हुई है लाइटिंग बहुत अच्छी है और साथ में।

हम एक बैठे हुए हैं वह फोन चला रहे हैं।

और जाड़ियां लगी हुई हैं पीछे टूटी सीट दबा रहा है।

पीछे मंदिर बना सा है में फूलों की माला डाली हुई है।

में वाइट कलर के स यहां नीचे गद्दे पडे हुए हैं।

ये किसीस्कूल को किपिका जिसमें।

बच्चे छोटे बच्चे क्रिस्टमस का प्रोग्राम कर रहे हैं।

जिसमें वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है और लाल कलर की टॉपी पहन रखी है पीछे स्कूल की दो बसे खड़ी हैं।

स्टाफ कर रहे हैं खड़ा हुआ है बिल्डिंग बहुत अच्छी है स्कूल की नीचे ग्रीन कलर का मैट है।

और इसमें मिठाई के में वाइट कलर की प्लेट में हर अलग तरह की मिठाइयां एक बाउल में और ऊपर।

अह मैकेनिकल बुलेट मोटरसाइकल को ठीक कर रहा है और साथ में।

मोटरसाइकिल पड़ा हुआ हैकबाड़ पे पीछे टायर पड़े हुए हैं।

बाटा का शोरूम हैऔर वहां पे इसमें एक ऑटो रिक्षा।

दिख रहा है जो ऑटो रिक्शा उसको चला रहा है और ठीक उसके आगे स्कूटरी पे।

और उसी को आगे बाइक पे एक हेलमेट पहनकर लड़का बैठा हुआ है।

और सामने केले बनाना टंगे हैं।

ये एक बिजी ऑटो वर्कर है वर्क्स है यहां पे स्कूटरी की और मोटर की ऑटो वर्क होता है यहां पे।

बैंक का दिख रहा है और ठीक उसके सामने ए।

और वहां इसमें एक वाइट कलर की।

और सड़क बहुत साफ-सुथरी दिखाई दे रही है।